आम का पेड़ पकड़ी हुई है वो भी आम का पत्ता छू रहा है।

सामने बड़ा सा एक आम का पेड़ है बाहर ढेर सारा आदमी है।

यह एक हॉल का फोटो है जहां पर दो तीन सोफा लगा हुआ --

फोटो में बड़ा सा तालाब दिख रहा है जिसके किनारे बहुत सारा लाइट जल रहा--

सामने कुछ आदमी खड़े हुए हैं एक स्टील का बड़ा सा बर्तन नीचे रखा हुआ।

बगल में ढेर सारा पिलर्स है और पीला कलर का है और बैलून भी लगा हुआ है।

पानी का कलर पीला है चे ढेर सारा पेर पेड़-पौधा लगा हुआ है एक ब्रिज बना हुआ है।

उसके ऊपर एक लेडिस खड़ी हुई है जो बैग टांगी हुई है।

लंबा चौड़ा एरिया में फैला हुआ है बड़ा सा एक मंडप बना हुआ है।

जिससे वाइट कलर से पीला कलर से छरा हुआ है अंदर बहुत सारा लाइट चल रहा है।

क्रिसमस ट्री है नीचे टाइल्स लगा हुआ है बगल में कुछ छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं ऊपर लाइट जल रही है।

लाइट लगा हुआ है भाइपर वाला पीछे बड़ा सा एक कांच है।

इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।

नीचे ढ़ेर सारा छोटा छोटा कागज टंगा हुआ है ऊपर करकट लगा हुआ है।

एक फोटो में बड़ा सा घर दिख रहा है जो काफी लंबा है।